उनके पीछे एक ग्रीन कलर की दीवार--

और बहोत बड़ा सूरज भी दिख रहा है।

निचे हरि भारी घास हैं गार्डन भर।

यहां पर कुछ काम जहां पर चल रहा है

शॉपिंग वाली गैलरी है ये फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है।

उसके अंदर सूटकेस रखे हुए हैं।

और इसमें दो लकड़ी के बड़े टेबल --

यहां पर बहुत सारा सामान है पकाने --

यहां पर उदय रंग के बड़े बड़े--

ऊपर बहोत सारे सीलिंग फैंस भी है।

यहां पर एक बहोत बड़ी टी_वी लगी हुई है।

और एक बाजू कांच का दरवाजा भी है।

इस जहां पर नीचे हरी भरी घास है।

यहां पर झूले लटक कर गिर चुके हैं जमीन प--

और बाहर बहुत सी गाड़ियां लगी हुई हैं।

उसके सामने बहुत सी रेल पटरियां हैं।

और यहां पर चेरें भी रखी हुई हैं।

यहां पर रोड है दो आने की और जाने की रोड है।

और रोड पर पानी भरा हुआ है बारिश का।

और एक आदमी खुद की सेल्फी ले रहा है।

और कुछ टेबल्स पर लैपटॉप भी रखे गए हैं।